और यहां पर एक आदमी एक औरत को अवार्ड दे रहा है।

यहां पे एक हाथ भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर वायर्स भी हैं।

यहां पर बहोत सुंदर सा प्लांट्स है जो कि येलो कलर का है।

यहां पे एक पहाड़ है जहां पर जमीन दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का--

और यहां पर बहोत बड़ा बड़ा पेड़ भी है।

ये एक घर है जो कि पूरा का पूरा बंबू और टीना से बना हुआ है।

और उस पर बहोत सारा आदमी का फोटो लगाया गया है और वो सब का चेहरा भी क्लियर नहीं है।

यहां पर एक पेड़ का स्टेम भी दिख रहा है।

यहां पे एक बहोत सुन्दर सा रिसोर्ट है जोकि पुरा का पुरा लकड़ी से बना हुआ है।

यहां पे बहुत सुन्दर सा नदी है।

दूर में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिख रहा है।

यहां पर बुद्धा का मूर्ति भी है दो थू है वो भी गोल्डन कलर का --

ये थोड़ा सूखा सूखा जगह लग रहा है।

और बहोत सारा गाड़ी भी है जो की अलग अलग कलर का है यहां का सड़क भी काफी अच्छा है एक हाईवे है।

फ्लोर पूरा का पूरा व्हाइट कलर के मार्बल से बना हुआ है।

यहां पर फेंसिंग भी है जो की वाइट कलर का है।

और यहां पे बहोत सारे लोग है जिनका चेहरा भी क्लीयर नही है।

या मे दोनों बड़ा बड़ा पेड़ भी है।

यहां प हमको दो आदमी दिखाई दे रहा है जिसका चेहरा भी क्लियर नहीं है।

यहां पे रेड कलर का बैनर भी था लेकिन क्या लिखा है नहीं दिख रहा है।

और फेंसिंग भी है जो कि ग्रीन कलर का है।

और लोग जो बैनर पकड़ के रखे हैं जिसपर फ्री रूरल हेल्थ कैंप और बहुत कुछ लिखा हुआ है।

धुली धुली है बहोत बड़ा बड़ा पेर भी है।